अ यहां एक थर्माकोल का बॉक्स रखा है।

और बिल्डिंग में कई सारी खिड़कियें हैं ।

और एकअ चेयर पर एकअ गार्ड बैठा हुआ है यहां एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा है।

जहां बहुत सारे कलर की बाइके है एक बल्फ बड़ा ब्ल्यू कलर का नजर आ रहा है।

अअ शख्स नजर आ रहा है स्विमिंग करते हुए।

यह एक रेस्टुरेंट का फोटो है जिसमें कुछ लोग--

अ इसमें का फ्लोर ब्राउन कलर का है।

अ डिब्बे नजर आ रहे हैं जिसमें टॉफी हैं।

जिसके के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है।

यहां वाइट कलर की लाइटें लगी हुई है ।

बहुत से पेड़ नजर आ रहे हैं पेड़ों पे फूल हैं जिनके कलर --

अक बहुत सारी लाइटें नजर आ रही हैं।

जोकि फ्लोर पर बिछा हुआ है।

जिम वाइट कलर का जिम में वाइट कलर का पेंट है।

एक रेड कलर का सोफा नजर आ रहा है।

ये एक पार्क का या जंगल का फोटो है।

मजदूर माल को ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं।

अज़ दूध की थैलियां बनी हुई हैं।

के अइसके दरवाजे लकड़ी के हैं।

जिसमें के बाहर एक बड़ी सी माला नजर आ रही है।

एक वाटरकूलर रखा हैचेयर पर--

इसके आस पास कुछ टोवर नजर आ रहे है।

और आसपास कई सारे पेड़ हैं इस ग्राउंड में बहुत सारी घास नजर आ रही है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।